इस फोटो मे बहुत सारा पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है एक व्यक्ति का सर दिख रहा है उसके साइड मे बहुत सारी नाव खड़ी हुई नज़र आ रही है। उसेक --

हरे कलर का दिखाई दे रहा इस पे सामने ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमें छोटी-छोटी घांस लगी हुई है।